आस-पास सच थोड़े-मोड़े घर हैं और बहुत सारे ईंटे पड़े हुए हैं।

अपने पे-पेपर और कलर्स ले के और एक मैडम हैं जो उनको कुछ समझा रही हैं |